मेरे सामने बहोत सारे बच्चे बैठे है।

छोले प्याज नींबू दूर में एक बहोत सारे कुर्सी लगा है।

सामने एक तीन मैनीक्विन चार मैनीक्विन दिखाई दे रहा है जिसमें कपड़ा है लगा हुआ।

बहुत सारा जो सामान है स्टेशनरी का वो मिल रहा है।

और एक बैनर भी है यहाँ पे मोटरसाइकिल्स भी है और तीन कार है ए_ सी_ का आउटडोर भी है।